येल्लो शिमला ग्रीन शिमला रेड शिमला पत्ता गोबी खीरा ककड़ी टमाटर बैंगन और भी काफी सारी सब्जीया रखी हुई दिखाई दे रही है बगल मे कुछ चिप्स भी टंगी हुई है।

एक छोटा सा वॉटरफॉल नजर आ रहा है जो की ऊपर की ऊँचाई से बहता हुआ दिख रहा है पानी ज्यादा ऊँचाई से तो नही बह रहा है लेकिन काफी साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है।

नदी नजर आ रही है नदी मे कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए नजर आ रहे नदी मे कुछ लोग नहाते हुए भी दिख रहे जो की वॉटर फॉल का आनंद ले रहे है पानी काफी दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है और पानी काफी ज्यादा भरा हुआ भी दिख रहा है।

ये वॉटर पार्क का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जहा पर तीन-चार फिसल पट्टीया एक लाइन से लगी हुई है जो की ऊंचाई मे बनाई गई है नीचे भी ब द पूल मे ये फिसलपट्टी आकर मिलती है जहा पर पानी भरा हुआ है।